तो ये नीचे बहुत सारी मूर्तियों को शेप दिया गया है पत्थर से तराश बनाया गया पहले के जमाने में यहाँ पे नीचे रेड कलर का मैड भी रखा हुआ है पीछे बिल्डिंग झाड़ भी दि --

पहाड़ दिख रहा है और उसके ऊपर हरी भरी घांस उठी हुई है और आजू बाजू बहुत सारे बड़े बड़े फतरे छोटे फतरे पड़े हुए हैं।

ये एक स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बोर्ड लगा हुआ है बाहर बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए लेडीज जेंट्स सभी और यहाँ --

बहुत सारे लोग हैं और ये पानी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे हरी भरी घास है इनका सामान है आजू --

यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर चपले छोड़े गए हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का बॉक्स भी रखा हुआ है बाहर यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे खिड़की दिख रही है।

और यहां पे नल का पाइप भी छोड़ा हुआ है कट्टा बनाया गया बाहर बैठने के लिए और से ऑरेंज कलर यहां पे मारा गया--

और यहाँ पे झाड़ा भी दिख रहे हैं और यहाँ ऊपर आसमान भी दिख रहा है बच्चे बच्चियाँ सभी लोग यहाँ पे झूलों के खुर्चियों के झूल रहे हैं यहाँ पे --

बैग में रखी हुई है हाथों में इनके लोठा भी है और यहाँ पे बड़े बड़े लाइट के फोकसस यहाँ पे लगाए हुए हैं यहाँ पेएए --